जिसके दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

मुझे इस फोटो में एक गाय दिखाई दे रही है।

एक डाकघर नजर आ रहा है।

जो कि काले रंग की है।

इस फोटो में मुझे एक शटर दिखाई दे रहा है।